एक बेंच के ऊपर एक पानी का बोतल रखा हुआ है।

यहां पर एल.ई.डी. बल्ब छत के ऊपर चमक रहा है।

यहां पर एक फल के लिए शॉप बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के शो फल मिल जाते हैं।

उसको एक सुंदरता से फूलो से सजाया गया है।

कुछ टमाटर खराब हो चुके है कुछ टमाटर अच्छे भी हैं यहां पर सब्जियों में हरी प्याज --

यहां पे फसल उग रही हैं फसलों के बिच में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर-सा पेड़ बना हुआ है।

यहाँ पर गेटों के सामने एक फूलों और बैलूनों से गेट बनी है।

और बहुत सारे लोग यहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं।

यहाँ पर एक ए.टी.एम. बना हुआ है जोकि भारतीय डाक का है।

यहाँ पानी के बोतल भी रखी हुई हैं।

यहां पर एक हाईवे रोड बना हुआ है जिसके साइड में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है कुछ पेड़ आम के भी है।

यहाँ पे दरवाज़े और खिड़कियाँ लकड़ी की बनी हुई है।

गाने के और इक्विपमेंट लगे हुए है कुछ के हाथो के सामने ढोलक रखी हुई हैं।

यहाँ ग्राउंड में बोहोत सारे हरे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक स्टेट बैंक का ए.टी.एम. लगा हुआ है जिसके अन्दर में एक व्यक्ति जा रहा है।

यहाँ पर एक बहोत ही सुन्दर-सा तालाब बना हुआ है जिसके आस-पास बहोत ही हरे-भरे पेड़-पौधे जो की पहाड़ों मैं हैं।